रूम का अंदर हमको एक बिस्तर दिखाई दे रही है दरवाजा दिखाई दे रही है।

न्यू ड्रैगन ए_सी रेस्टोरेंट लिखा हुआ है और नीचे में एक मोबाइल वर्ल्ड लिखा हुआ है इधर हमको एक स्कूटी दिखाई दे रहा है।

आकाश में काफी सारा बादल भी दिखाई दे रहा है।

हमको इस तस्वीर में एक कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा है रास्ता का किनारा हमको एक लाइट की टॉवर दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा डैम भी दिखाई दे रहा है।

सामने हमको एक बड़ा सा टाइमर भी दिखाई दे रहा है दीवार में हमको एक स्विच बॉक्स में भी दिखाई दे रहा है एक ब्लैक कलर का बैग भी दिखाई दे रहा है एक कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

दीवार में हमको काफी सारा तस्वीर दिखाई दे रही है।

इधर मुझे लाल कलर की सोफे और टेबल दिखाई दे रहा है टेबल मे ए --